यहां पर एक बाजार है उसमें एक दुकान है।

इधर बहुत से पेड़ भी लगे हुए हैं इधर झूले हैं इधर बहुत से अलग-अलग तरीके के झूले दिए गए हैं।

इसके चारों ओर हरियाली दी गई है।

इधर एक दो बेंच भी डली हुई है इधर बहुत से लोग भी है इधर हरियाली के साथ-साथ वातावरण का भी ख्याल बहुत ही अच्छी तरह से रखा गया है।

चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है कुछ दूर पर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर नीचे भी --